यहाँ पे कुछ बच्चे एक्ट कर रहे है।

बजरंग बली ने हाथ में पर्वत पकड़ रखा है |.

और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर साहू जैन महिला महाविद्यालय लिखा हुआ है।

ये एक मेडिकल शॉप है जहाँ पर एक आदमी मास्क लगाकर खड़ा हुआ है ।

और छत पे झूमर लगा हुआ है।

उसपे ट्रांसपेरेंट परदे पड़े हुए है।

और यहाँ पर पीछे भी एक जगह है जहाँ पर पेड़ बना हुआ है।

बॉल के पीछे दीवार है जो सफ़ेद रंग की है जहाँ पे तीन तरह के डिज़ाइन है |.